तिरंगे का रंग तीन रंग का होता है केसरिया स्वेत और हरा और उसमे एक चक्र बना होता है जिसमे चौबीस तिल्लियां होती हैं |

पुतले बने हुए तो पक्षियों के और उनपर --

स्थान पर भारत पेट्रोलियम का टैंक खड़ा हुआ है | वह टैंक --

लोगों के पास कुछ पत्थर पड़े हुए रखे हैं।

इनके गोपालगंज महाविद्यालय की ईमारत है इसमें बच्चों को टेक्नोलॉजी की --

खण्डर के क्षेत्र में घास फूस टपर का बना हुआ है टपरा और उसमे चार खम्भों से वह छपरा बना गया है उसमे --